नीचे वॉल रसगुल्ले के और ट्रॉफी के पैकेट भी।

जिसमें से गुलाबी ऐ लाल है नीली है हरी है। बैंगनी कलर की साड़ियाँ भी हैं।

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बैठे हुए भी हैं।

इसके अंदर इसकी छत डिजाइन बहुत सारी पड़ी है जिसके अंदर कलर व्हाइट और ब्लैक है।

इनमें फनीचर भी काफी एक बना दिख रहा है।

इसके अंदर एक सीढ़ी नजर आ रही है जो पीछे की ओर खड़ी है।

यहां पे बहोत बड़ा मैदान नजर आ रहा है जो खाली पड़ा है।

पेड़ भी नजर आ रहे हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं।

खाने पीने का भी सामान रखा नजर आ रहा है।

ये एक बड़ी सी पार्क है जिसके अंदर बहुत सारे पौधे छोटे वाले डिजाइन वाले लगे है।

पत्थर भी गोल वाले बीच में बिछे हुए लाइन स--

बहुत सारे पेड़ भी यहां पे छोटे छोटे पौधे हैं।

सारे आदमी भी लाल कलर के कपड़े पहने हैं।

सीढ़ी भी दिख रही है और स्टील की रेलिंग भी है इसमें--

ग्रीन ग्रीन पेड़ बी हैं। कोने में छोटे आधे पौधे टंगे हुए हैं।

उसके अंदर एक रिक्शा दिख रहा जो सामने को ओर खड़ा है।

और गमले भी रखे है लाल कलर के उसके अंदर छोटे छोटे पौधे भी लगे हैं और घास भी बहोत सारी दिख रही है ह --

इधर उधर सूखे हुए कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं बड़े बड़े जिसके अंदर लकड़ियां पूरी दिख रही हैं।

अ छोटे छोटे से पेड़ बी साइडों में जमीन में निकले हुए हैं।

एक बड़ा सा खंभा भी यहां बीच में लाइट लगी है।

साइड में बोर्ड लगा हुआ है जो लाल कलर का है व्हाइट अक्षरों से लिखा है पीले अक्षरों से --

सामने की और एक लेडिस खड़ी है साड़ी पेहन के पुरी।

ऊपर की ओर गोल वाली वाइट कलर की लाइटें बहुत सारी लगी हुई हैं।

लाल कलर की स्पेलिंग से नाम उसका ऊपर की ओर लिखा हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ भी और बहुत सारे हैं।

बड़े छोटे सारे बोर्ड हैं आ बहोत सारे बाइक भी यहां पर खड़ी है और स्कूटी भी खड़ी है।

अ बहुत सारे हरे हरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इसके अंदर पीछे की ओर बड़े बड़े पेड़ खजूर वाले दिख रहे हैं और भी पेड़ हैं जो हरे हैं।